पिक्चर क्लीट देखते है बहुत बहुत देखना है बहुत सुंदर है बहुत बढ़ियाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा है।

लॉट ऑफ गाड़ियों के गाड़ियों को स्टॉप दे रहे है स्टॉप का उच प्लेस है एक गवर्नमेंट प्लेस मे बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है। उसके लिए बीच में --

सीधे जाओ देखता है लाइन है ग्रंथलया ग्रंथलया शॉप है बहुत सुंदर है।

वातावरण का बहुत सुंदर है बहुत-बहुत अच्छा है बहुत अच्छा--

धीरे चला वह बहुत सुंदर है एक पानी बॉटल --

टु गाड़ियों के निकाला हुआ वो बहुत सुंदर है रोड का रोड को बंद करो लाटो लाड़ी लड़कियों सा है।

बहुत अच्छा बैंक का केनरा बैंक इस मो मोस्ट बहुत अच्छा बैंक है बहुत बहुत बड़िया बैंक है केनरा बैंक फंड्ज बहुत सुंदर--

पिक्चर क्लीट टू देखता है बहुत-बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है नियोजन नियोजन सोमापुर--